यहां पे बहुत सारे खेत दिख रहे हैं।

और बहुत सारे सोफा दिख रहे हैं और यहां एक बाहर लाल रंग की छतरी दिख रही है।

शीशे का बहोत बड़ा दरवाजा दिख रहा है।

एक बड़ा सा बल्ब दिखाई दे रहा है।

और काले रंग का एक बैग दिख रहा है और इसके ऊपर बोर्ड दिख रहा है जिसमें बोर्ड मॉडर्न मार्ट लिखा है।

और यहां पे बहुत सारे मिरर लगे हुए हैं मिरर में बहुत सारे जिम पोस्टर लगे हुए है आसमान दिख रहा है।

एक भगवान की बहुत सारी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं।

एक बच्चे ने फ्रॉक पहनी हैं और दो बच्चों ने पेंटॉप पहने हुए हैं और यहां काले रंग का कर्टन दिख रहा है।

छत दिख रही है छत पर लाइट्स दिख रही है और दीवार पे एक पिक्चर दिख री है जिसमें लावा फेरे लिखा है।

और मोर का पंख बना है और पीछे दीवार दिख रही है और नीचे फर्श दिख रहा है।